मेन्स स्ट्रक्चर बन गया है लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है लग रहा है।

गाड़ियों के सामने एक रेड कारपेट भी बिछाया गया है।

इस तस्वीर में हमें नदी का किनारा दिख रहा है।

दुकान के बाहर एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

जोकि सफेद रंग का है उनका बांसुरी सोने रंग का है।

पिलर दो मंजिले का है अंदर बहुत सारे स्कूटी दिख रहे हैं।

दुकान के बाहर दो मोटरसाइकिल पार्क गया गया दिख रहा है और एक साइकिल भी है।

इस तस्वीर को देख के लगता है कि ये एक बस स्टेशन का है जिसमें एक बस रुकी हुई है।

इस तस्वीर में हमें दुर्गा पूजा की पंडल दिख रही है।

मंडल को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है अंदर दुर्गा मां की बहुत बड़ी मूर्ति है।

एक मोटरसाइकल और एक स्कूटी भी पार्क की गई दिख रही है ये तस्वीर दिन के समय में ली गई है।

इस तस्वीर को देख के लगता है कि ये किसी जंगल में ली गई हो।

दुकान में हमें बहोत सारी चिप्स के पैकेट भी दिख रहे हैं और एक आइसक्रीम का फ्रिज भी है।

दुकान में हमें दो आदमी भी दिख रही है जिसमें से एक शायद से दुकानदार है और एक कस्टमर है।